स्कूल का ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने फुटबॉल खेली जाती है।

दही और चटनी दिख रही है वाइट कलर का दही है लाल कलर की चटनी है जिसमें चम्मच डाला हुआ है व्हाइट प्लेट है जिसमें राइस और चिकन है ।